और उसके बगल में एक लूँगी और एक शर्ट पहन के एक आदमी कुछ बेच रहा है।

और यहाँ पे पानी लगा हुआ है अ स्टैन्ड पे (पर) आप देख सकते हैं पानी लगा हुआ है।

और आप देख सकते हैं काफी सुंदर नजारा माता पार्वती का भी स्टैचू बनाया गया है। ये दो साइड पेड़ हैं।

और काफी सुंदर दिस पीछे एक पाहाड़ बनाया गया है। आर्टिफ़िसीयल अच्छा --

इस ग्राउन्ड पे (पर) एक लड़का इस ग्राउन्ड के घांस को कूद रहा है और ये घांस का बड़े अच्छे से ये डिजाइन बनाया गया है।

और उपर एक आई.टी.आई. कोलेज इंडस्ट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का एक यहाँ पे उपर बोर्ड लगा हुआ है।

और पेड़ उड़ भी उगे हुए हैं। ये व्हाइट एंड रेड कलर का है। ये जो बड़े-बड़े पावा यहाँ पे खड़े किये गये हैं।